यहां राइट साइड अलग अलग वैराइटीज की फर्शें रखी हैं।

जिसका नाम है शिव वसतैले यहां पर एक--

कुछ पानी है झील के अंदर आइड साइड हरियाली है सामने मकान हैं कुछ पेड़ पौधे लगे हैं टावर हैं बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं हैं अगर यहाँ जाए तो उस खाने पीने का साथ में लेके जाए सामने पेड़ पौधे--

ये एक हॉस्पिटल के बाहर की इमेज है जहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर बाइक्स खड़ी है एक कार है।

और सामने एक ट्री लगी है ट्री यानी पेड़--

यह पेड़ के अंदर खजूर भी उग रही है ऊपर एक भैया खड़े हैं शायद डॉक्टर हो सकते हैं।

अगर आदत में एक बार आ गया तो आप ये करते रहेंगे।

यहां पर ये लोग मछली पकड़ने आए थे इन्होंने काफी सारी मछली पकड़ी है।

अगर इसके अंदर कोई आ जाए तो बाहर नहीं जा पाएगा।

यहां पर फिटनेस यानी जिम बहुत अच्छे से कराई जाती है यहां की फीस बहुत कम है और वर्कआउट अच्छा है।